यहां पर एक बड़ा सा पेंटिंग का डिब्बा रखा हुआ है और कुछ सामान भी रखा हुआ है और--

डरी हुई है कुछ बोल रही है भाषण कर रही हैं।

यहां पर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं मिशाल जल रहा है।

यहां पर एक बड़ा सा होटल है और बहुत सारा टेबल कुर्सी लगा हुआ है कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं।

यहाँ पे एक पुराना दुकान है और कुछ बाइक भी लगा हुआ है टायर भी लगा हुआ है।

यहां पर एक आदमी इसी तरफ देख रहा है।